गमले लग रहे है बहोत सारे।

व्हाइट कलर कि प्लेट है और नीचे इसमें टेबल है।

चार कट्टे रखे हैं व्हाइट कलर के।

नीचे के साइड बहुत सारे बॉक्स बने हैं।

ये एस_बी_आई बैंक है और इसमें एस_बी_आई का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा और टेबल पे तीन लैपटॉप रखे है।

और ऊपर की साइड ब्लू कलर की एक बॉक्स रखा है ग्रीन कलर हो रहा है इसमें रेड कलर हो रहा है बीच में और दो बोर्ड लग रहे हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हैं डॉक्टर और इन्होंने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा है।

ग्रे कलर की टी-शर्ट चेक कलर के शर्ट और सूट पहन रखा है लेडिज ने।